यह रोड का दृश्य है लग रहा है आगे जाम है इसलिए ऑटो खड़े है ऑटो पे कुछ --

पीछे एक व्हाइट कलर का घर है और मंदिर के पीछे एक येलो कलर का घर है।

बहोत अच्छा दिख रहा है। पेड़ पौधे हरा भरे है और एक घर भी है जो व्हाइट कलर का जो बहोत ही अच्छा है।

पानी में झूले पे कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स उसके साथ खेल रहे है।

बिल्डिंग के आगे बालू गिरा हुआ हैं कुछ वहां पे साइकल लगे हैं कुछ पेड़-पौधे हैं।

नारायन एच.पी. पीछे पेड़ हैं।

बिल्डिंग हैं घास हैं पेड़-पौधा हैं एक बिल्डिंग व्हाइट कलर का हैं एक आदमी जो टी-शर्ट पहना है।

बहोत सारा लीची हैं पीछे एक झाड़ू भी हैं।